हम देख रहे है कित्ता अच्छा नजारा है यहाँ पर यहाँ बैंच भी दिखरे होंगे आपको ये झूले भी दिखरे होंगे।

कितनी मस्त लगी हुई है और यहाँ खंबा देख रहे है हम ये और यहाँ बहुत सारे पेड़ भी है।

आप जी देख रहे होंगे पेड- मेड भी है और ये ग्रीन है ये घंटाघर है |